तीन लाइटें चालू हैं।

मिट्टी चार दिवारी के अंदर हैं।

जिसके अंदर ओप्पो ए इकहत्तर के काफी मोबाइल पड़े हुए हैं।